साथ ही एक लड़का खड़ा हुआ है उसके साथ एक पीली साड़ी में औरत खड़ी हुई है।

ने साड़ियां पहनी हुई हैं और कुछ ने सलवार कमीज भी पहने हुए हैं।

कश्ती का रंग पीला और सबज है ऊपर चार दायरों का निशान लगा हुआ है।